पेट्रोल पंप हमारे आसपास होते हैं तो दूसरे जगह जैसे कि लोकल में तेल नहीं डलवाना पड़ता है।

जैसे कि आप एक चित्र में देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे-अच्छे खिलौने खेलने के लिए बच्चों के लिए बनाए गए हैं इसे मेले मेले में भी बनाए जाते हैं और मेले जैसे ही लग रहा है और इसमें बच्चे लोग इसमें एन्जॉय करते हैं और खाते-पीते --

और यहाँ पे यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया भी --

जैसे कि जैसे कि आप एक चित्र में देख पा रहे होंगे कि दो प्यारा सा तो एम तोता जिसको पैरेट भी बोलते है और यह पिंजरे में कैद हैं और कितने प्यारे दिख रहे हैं और इससे--